अ यहाँ एक बेडरूम है और यहाँ एक बेड बिछा हुआ है जो की ब्राउन कलर का है दो चेयर्स रखी हुई हैं जो रेड कलर की है और रूम के अंदर जो कर्टन है वो पर्पल की डले हुए हैं।

और यहाँ पे काफी अच्छी दुकान है और साड़ियों के कलर्स भी बहुत अच्छा है और फैब्रिक भी बहुत अच्छा दिख रहा है।

यहां एक रोड दिख रहा है जो कि पार्किंग जैसा है रोड के उस पर एक गेट है अंदर जाने के लिए।

ये एक घूमने जैसी जगह लग रही है काफी बड़ा ग्राउंड है और वहां बहुत सारी सीढ़िया यहां नजर आ रही है बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

आ यहाँ एक रोड है जिसपे काफी ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत सारे ऑटो रिक्शा है और बहुत सारी फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं ये रोड बहुत मजबूत और साफ़ है।

एक छोटा - सा तालाब नज़र आ रहा है और ये बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर नज़ारा है।

यहाँ पे एक कवर्ड नजर आ रहा है और ये बहुत ही अच्छा किस्म का एक कवर्ड है जो की वॉल के अंदर ही अटैच किया हुआ है और ये रूम बहुत अच्छे से मेन्टेन किया हुआ है|

यहाँ पे अ डिजिटल डिजिटल मशीन नहीं हैं बट यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सरसाइज की मशीन हैं यहाँ पे बहुत लोग एक्सरसाइज कर रहें हैं और ये एक एक्सरसाइज की बहुत अच्छी जगह है।

ये एक होटल या मेरेज गार्डन जैसा लग रहा है यहाँ पर किसी सेरेमनी का आर्गेनाइजेशन किया गया है ये बोहोत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

काफी सारी लाइट्स यहाँ लगाई गयी है गमले लगाए गए है और इसकी पार्किंग में काफी गाड़िया पार्क है और ये बहुत ही सुंदर है यहाँ पे फुवारे भी है।